ये चित्र एक मंदिर का है जो उपर की और कुछ भागवाना लडके हुए है और वो कन्ट्रक्शन चल रहा है और नीचे की और कोई आदमी बैठे हुए है।

हे चित्र कपडो का दुकान का है। जिसमे बहोत सारे कपड़े रखे हुए है सेल्स मे और लाइट लगी हुई है।

ये चित्र मंदिर का है जहा पर कुछ लोग है और एक लोग सामने की और बैठा हुआ है। और वो--

ये चित्र मे गार्डेन का है जहा पर बहोत सारी ग्रीनरी है।

ये चित्र में एक बिल्डिंग है और झाड़ा है सामने की ओर अ बहुत अच्छे लगे है आसमान दिख रहा है।

ये चित्र गार्डन का है जहा पर बहुत सारे ग्रीनरी है और बड़े-बड़े झाडे है और कुछ पल्स चर्च का सिम्बल दिख रहा है।